उसने रेड कलर का सूट पहना हुआ है जो कि--

एक कार वाशिंग सर्विस सेंटर दिखाई दे रहा है जो कि--

खड़ा लग रहा है यहां का--

इस इमेज में मुझे एक घर का काम होते--

फर्नीचर का काम चल रहा--

सा मेडिकल स्टोर दिख रहा है और वहां--

जूस की दुकान दिखाई दे रही--

इस इमेज में मुझे एक--

है यह देखने में बहोत ही--

कि फोटो भी लगी हुई--

रहा हैं यह देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग--

रही है। यह बहोत ज्यादा बड़ी दिख रही--

इस इमेज में मुझे एक फोटो कॉपी--

हुए यह श्री अनुसूचित जन जाति वाले लोगों के लिए--

किया जाता है और यह एक --

इमेज मे मुझे एक मेन्स वियर --

जिसका नाम शिव वस्त्रालय है और --